दिखाई जा रहे पोल है पोल पर एक बोर्ड है बोर्ड पर लिखा गया है बगीचा फैमिली री--

पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है पेट्रोल पंप के पास काफी भीड़ दिखाया जा रहा है ऊपर लाइट्स लगाए गए जो कि ऑन है लोहे के ग्रिल से उसे घेर करके--

पाइप दिखाया जा रहा है बड़ा सा पोल दिखाया जा रहा है बैठने के लिए सीढ़ी टाइप की बनाई गई है ग्राउंड में--

सारे बोरे रखे गये है बाहर पे कुछ बोरे गिरे हुए किसी को बिछाकर के रखा गया है दो साइकल खड़ा है एक ठेले वाला है।

घर वर दिखाई जा रहे हैं लोहे की ग्रिल से उसे घेरा गया काफी जंगल बंगल दिखाए जा रहे कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर कचड़ा दिखाया जाए--

अरे तार वार लटक रहे हैं कुछ कंकड़ पत्थर दिखाए जा रहे हैं ओ ट्रेन काफी--

बाहर पे बोर्ड लगाए गए हैं पोस्टर है लोहे का गेट है अंदर प्लास्टिक --

गाछ टाइप का है जिसे चारों तरफ से घेर दिया गया है पोल दिखाया जा रहा--

कांच का बलूंस है यलो में वाइट में रेड में सोफा हैं।

किए गए हैं कांच वाँच लगाए गए हैं बहुत सारी विंडोज़ है विंडो --

पिंक में ऑरेंज में वो तीनों सो करके योगा कर रहे हैं बोर्ड दिखाया जा रहा है वायरिंग का--

डर लगी हुई है ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ कुछ और भी पोस्टर वोस्टर है पीछे में कुछ--

एक गड्ढा दिखाया गया है गड्ढे पर रड को गाड़ रहा है दो लड़का मिल कर के एक लड़का उसे खड़ा होकर के देख रहा है वो एक लड़का हा --

काम हो रहे हैं ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ तार है बोर्ड है।

एक स्टेशन टाइप का दिखाया जा रहा है जिसपर रिक्शा खड़ा है एक लड़का और एक लड़की है जो--

कुछ बोर्ड वोड टाएप के एक झोपड़ी टाएप का भी दिखाया जा रहा है जिसमें बिचाली-उचाली से पूरी तरह से घेरा गया एक आदमी है जो गले पे गमछा लिए --